बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है और इस स्कूल के अंदर गमले पड़ी है गमलो में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के चश्मे मिलते हैं।

ऊपर चार्ट लगाया गया है चार्ट के अंदर एक डॉक्टर है जो एक बच्चे की आंखों में एक मशीन लगी हुई है।

और इस घर के आगे मोटरसाइकिल खड़ी है और बाहर एक गाड़ी खली खड़ी है जो पीछे से खुली है।